एक स्कूटी है एक बुलेट है एक बाइक है।

ब बुलेट में दो शीशे हैं।

दो आदमी बात कर रहे हैं।

कुछ कलर रखे हुए हैं।

दो तीन वाटर बोतल रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक मारुती सुजुकी है।

यहाँ पर कोई बाइक ख़डी हुई है।

कुछ स्कूटी खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं कुछ टेबल हैं।

जगह जगह नमकीनो के पैकेट पड़े हुए हैं।

यहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं कुछ छोटे पत्थर भी हैं।

यहां पर बहुत से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं लाल कलर के--

एक की साइड में बैग हैं।

एक लड़की के हाथ में एक वॉच है।

पीछे ये फूलों से सजाए गए स्टेज है।

सामे एक जनरेटर रखा हुआ है।

दो तीन फोन रखे हुए हैं।

प्लेट है प्लेट में खाना खा रहे हैं।

ब्लैक सा एक रखा है।

छ डिब्बे रखे हुए हैं।

यहां प र एक जिम है।

उधर एक गेट दिख रहा है।

एक आदमी जिसका हाथ टूट रहा है वो खड़ा है।

छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं प्लाई के।

यहां पर कुछ पुतलों की दुकानें हैं।

जोहोकी इसके ऊपर रखे हुए है नीचे कुछ बर्तन रखे हुए है लोटे रखे हुए है।

यहां पर एक बैंक्विट हॉल है।

एक चटाई फोल्ड हो रही है एक बॉल है।

यहां पर एक मकान है।

पीछे भी एक घर है टीन शेड गिरा हुआ है।

कुछ ढ़ोल रखे हुए हैं एक लेडिस बैठी हुई है।

यहां पर एक टीन सेट के नीचे गोल सर्कल बना हुआ है।

टेज को फूलों से सजाया गया है।

पीछे लाल कलर का पर्दा लगा हुआ है।

एक सोफा पड़ा हुआ है पीछे एक आदमी बैठा हुआ है।

पीछे जल जीरे रखे हुए हैं।

यहां पर नीलम अग्रवाल का क्लीनिक है।

सजावट की गई है शेर का मुंह दिखे रहा है।

यहां पर एक आदमी दिख रहा है।

बराबर में एक छोटे से गमले में लाइट जल रही है।

जिसके हाथ में फोन दिखाई दे रहा है।

उसके हाथ में प्लस्तर हुआ है।

एक आदमी किताब लेव देख रहा है।

एक आदमी पिलर ऊपर से पकड़ रखा है।

रेंजर साइकल है सादी साइकल है।

टेबल के ऊपर एक चादर बिछाई गई है।

छे गिलास रखे हुए है बराबर में एक भिगोना रखा हुआ है।

अंदर कुछ आदमी बात कर रहे हैं।

बराबर में कुछ मशीन है।

इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है जीरो पर्सेन्ट ई_एम_आई लिखा हुआ है।

नीचे बैग कुछ रखा हुआ है शीशे की खिड़की है।

टेबल है डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई बोतल है।

मशीनें हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं।

कैमरे लग रही हैं फ्रिज है पीछे--

पे छोटे कमरे दिख रहे--